एक अग व पिंक कलर और रेड कलर और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन कर के रखा है बहुत अच्छी --

यहाँ एक तालाब दिखाई दे रहा है जो कि तालाब में ही बहोत सारे पौधे लगाए हुए दिखाई दे रहे है। लगे हुए दिखाई दे रहे है। बहोत प पानी आ रहा --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

राजनीति स्नातक महाविद्यालय हरिपुर दिखाई दे रहा है जो कि विद्या स्कूल है हैना और यहाँ स्कूल में --

यहाँ एक कुआँ दिखाई दे रहा है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है और आस-पास बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे है छोटे-बड़े।

यहाँ कुछ छाते जैसे दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे छाते दिख रहे हैं जहाँ कि लोग बैठे हुए दिख रहे हैं छाँव के कारण और यहाँ कुछ जग में कुछ भरा हुआ दिख --

बहोत से लोग कब क्रिकेट खेल रहे हैं। बहोत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं जो एक लड़का बैट पे भी बैठ चुका दिखाई दे रहा है। एक लड़का पत्थर पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकि लोग --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

यहाँ बहोत बड़ी मंजिल दिखाई दे रही है जोकि बहोत अच्छे स्टैण्डर्ड तरीके से बनी हुई दिखाई दे रही है। बहोत सारी खिड़कियां बहोत सारे गेट और बहोत अच्छी --

टंकी है। बहोत सारी और उसी के आस-पास बहोत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं। बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। बहोत अच्छी मंजिल दिखाई दे रही है। ये --

और जो लुक है बहौत सुन्दर दिखाई दे रहा है बहौत शांतिपूर्वक दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक फीका गुलाबी करके घर म म घर बना हुआ दिखाई देरा बहोत अच्छे वा बहोत सारी खिड़कियां दिखाई देरी।

ऑटो-रिक्शा पीछे ये साइकिल वो दिखाई दे रही है कोई लोग जा रहे हैं को --

यहाँ एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है जो कि किराने में बोहोत अच्छी अच्छी अगरबत्ती हैं। मोंगरा वगैरे बोहोत कलरफुल --

अ टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बोहोत सुपर दिखाई दे रही है। कुछ यहाँ सिरिंज विरिंज लगाई हुई दिखाई दे रही है। और ये --

कुछ चमकीली पट्टियां लगाई हुई दिखाई दे रही है। गणेश जी की स्थापना बहुत अच्छी तरीके से करी हुई दिखाई दे रही हैं।

और बहोत अच्छी कांच-वांच सब दिखाई दे रहे है। बहोत अच्छा सैलून दिखाई दे रहा है।

यहाँ इन लोगों ने होली खेल के आये हैं ऐसा लग रहा है और पूरे कलर से गंदे हुए दिखाई दे रहे हैं। पिंक कलर गुलाल खेल के आये हैं।